छोटी सी दीवाल की बाउंड्री दिख रही है जोकि ग्रीन रेड कलर की है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। पास में एक दीवाल है जोकि पिंक कलर से पेंट है।

इस इमेज में मुझे एक अ ह हेयर कटिंग की शॉप दिख रही है और यहाँ पर कुछ दवाइयां की शॉप भी दिख रही है। यहाँ पर एक दीवाल दिख रही है।

इस इमेज में मुझे सीमेंट की गैरेज जैसा दिख रहा है। कुछ लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे और बोरी रखी है व्हाइट कलर की।

और इसके अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं और इसके बाहर भी एक इंसान खड़ा हुआ है | पास में कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं और एक दिवाल बीच में से है वाइट कलर से पेंट हैं।

इस इस इमेज में मुझे स्कूल स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट दिख रहे रंगोली बना रहे हैं और वहाँं पे टीचर्स भी खड़े हैं।